खरीदे और बेचे जाते हैं बाइक और कार के हर तरह के पार्ट ।

यह एक ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट की दुकान है जहां पर--

ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट खरीदे और भेजे जाते हैं और--

यह एक टायर की दुकान है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। राजा टायर एंड बैटरी --

यह एक गुफा का दृश्य है जिसमें की कोई गुफा बनी हुईं हैं।

यह एक कच्ची सड़क का दृश्य है जो खेतों के बीच में से कच्ची सड़क--

निकाली जाती है उसका दृश्य है और उसके आसपास दोनों साइड --

कुछ फसल बोई गई है और सामने से पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

गमले में कुछ पौधे उगाए गये हैं और उसके पास में ही कुछ मुर्गे घूम रहे हैं।

इसमें बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें व्यायाम शाला --

येहं फवारो का दृश्य हैं जहां पर एक लाइन में बहुत सारे फवारे लगाए गएं हैं और उसके पास में छोटे छोटे गमलो में--

जिसमें बक्से रखे हुए हैं और तोते व्हाईट कलर के और रेड कलर के--